प्रोग्रामिंग है जहाँ पर काफी सारी लडकियां नृत्य कर रही है और लाइटिंग भी काफी अच्छा लगा हुआ है।

साइकिल और एक मुर्गी भी सड़क पर दिखाई दे रहा है सड़क पर गड्ढे उनमें पानी--

बहुत हरियाली घास बहुत अच्छा-सा ग्राउंड दिख रहा है क्रिकेट खेलने में बहुत काफी मजा आयेगा इस --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

एक शॉप है जिसमें काफी सारा बैट रखा हुआ है जैसे कि टॉम डबल एस एडिडास और बॉल भी बहुत है वुडेन गुरु विकी बॉल बहुत बॉल है।